यह दृश्य एक मार्केट का है जहां पे बहोत सारे लोग हैं।

एक आदमी अपने सिर पर व्हाइट कलर का गठरी बांध के रखा हुआ है।

इस दृश्य में एक पोस्टर टंगा हुआ है जिसमें सवेरा सिर्फ स्वीट्स भंडार लिखा हुआ है ये रेड कलर से लिखा हुआ है।

पास बहोत बड़े बड़े पत्थर भी दिखाई पड़ रहा है जो की ग्रे कलर के नजर आ रहे हैं।

हरे पेड़ पौधे दिखा दिखाई पड़ रहे हैं।

रैक बना हुआ है ऊपर के साइड कुछ क्रॉकवेल वाला लिखा हुआ है।

यहां पे एक टेबल भी रखा हुआ है जो कि ब्राउन कलर का है।

यह दृश्य एक चप्पल जूते का दुकान का है जहां के कवर्ड पे डब्बे में भर भर के चप्पल जूता रखा हुआ है।

के पीछे एक घर है जो कि येलो कलर का है उसमें दो तीन खिड़कियां हैं और एक दरवाजे भी हैं।

रोड के आसपास बहुत सारे हरे भरे घास नजर आ रहे हैं।

आगे की साइड टेबल लगाया हुआ जहां पे एक क्यू_आर कोड का स्कैनर रखा हुआ है।

यह दृश्य एक बुक शॉप का है जहां पर बहुत सारे बुक्स नजर आ रही हैं।

यहां पे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है जो--

व्हाइट कलर का है उस पे वाइट कलर का कुछ डाला हुआ है नीचे घास दिखाई पड़ रही है जो कि ग्रीन कलर की है आगे की और तीन छतरी लगाई हुई हैं जो कि रंग बिरंगे हैं।

जोकि ब कुछ बैठे हैं और कुछ खड़े हैं।

यह दृश्य कुछ कोई फंक्शन का है यहां पे आगे की और एक बोर्ड लगाए हुआ है और यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं।

और आगे की साइड वाइट कलर का पर्दा लगाया हुआ है ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं जो की व्हाइट कलर से रंगे हुए हैं।

कुछ लोग ऊपर तिरपाल लगाए हैं जो की येलो व्हाइट कलर का है।

शटर का रंग मैरून है पीछे की साइड भी एक कपड़ा दुकान है जिसके ऊपर एक पोस्टर टंगा हुआ है उसके ऊपर रवि सूट लिखा हुआ है।